सकते हैं यहाँ बहुत ही अच्छा जगह है बहोत ही खूबसूरत भी है और इधर पानी-उनी भी है और इधर देख सकते हैं।

इधर कुछ ज्वेलर्स ऐसा करके लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है ये और ऊपर में तार-वार भी है और फोन - वॉन भी है।